ये फोटो देख के लग रहा है ये एक बाइ का दुकान का फोटो है और ये स्टॉक का फोटो है।

ये फोटो दिन के समय पर लिया गया है और ये फोटो में बहुत सारे फूल की जो दुकान है वो --

लिमका भी रखा हुआ है नज़र आ रहे हैं बर्थडे के लिए डेकोरेशंस की चीज जो रखे गए हैं और केक भी ऊपर रखा गया है।

रास्ते के बीच में बाउंड्री लगा गया है और बाउंड्री में लोहा का गेट जो है वो लगाया गया है।

बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं साड़ी दिखाने वाला जो है वो दिखाई दे रहे हैं।